मॉल है जिसके बाहर बहुत बड़े-बड़े कांच लगे हुए आदमी है जो कि फोन पर बात कर रहा है साइड से बहुत सारी शॉपस से--

जो के सफेद और नीले कलर का हैं नीचे उतरते से बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं बड़े-बड़े जमीन पर घास ही घास बिछी हुई हैं आसपास बहुत ही खूबसूरत वाता--

बहुत बड़े चट्टाने है दूर -दूर पत्थर ही पत्थर है आस पास छोटे - छोटे पेड़ - पौधे है चट्टानों पर कही - कही छोटे -छोटे पेड़ -पौधे उग रहे हैं।

एक पत्थर के नीचे कुछ ऑरेंज -सी झलक दिखाई दे रही है पथरीली- सी जमीन है आसपास अ सिर्फ पेड़ ही पेड़ --

इसकी दीवारों पर बहुत बड़े-बड़े पोस्टरस लगे हुए कुछ आदमियों के कुछ औरतों के स्टील की रेलिंग लगी हुई है दीवारों का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है पीली और हरी कलर की दीवारें है ।

वाटर पार्क है जहां पे बहुत सारा पानी हैं ऊपर हट जैसा बना हुआ है नारियल के पेड़ लगे हुए है पानी ही पानी है।

होटल के बाहर का फोटो है थिएटर के सामने बहुत बड़ा कांच लगा है जिसके ऊपर बॉक्स ऑफिस लिखा हुआ है स्टील के रेलिंग्स लगी हुई हैं ब्लैक कलर के मार्बलस बने हुए है जीने लगे हुए हैं आस-पास साइडो में बैनर लगे हुए हैं।